यहाँ एक कपड़े की शॉप है जिसमे बहुत सारे कपड़े रखे हुए है।

यह एक मंदिर है उस मंदिर में शंकर भगवन की शिवलिंग रखी हुई है उसपे कुछ बैल पत्ते भी छाडे हुए हैऔर कुछ फूल भी छाडे हुए है।

यह एक जंगल है उस जंगल में एक व्यक्ति हैजो हाथ में फूल को लेकर खड़ा हुआ है।